अ यहाँ पर मुझे कुछ अम्म कुछ लड़के दिखाई दे रहे है एक औरत है जिसका --

एक बोरी लाल कलर की है जूट की--

चिकने लाल रंग की शर्ट और स्कर्ट नीले रंग की पहन रखी है वो लोग रंगोली बना रहे है रंगोली का कलर है लाल --

ए मिट्टी के रंग का है और लोहे का --

एक दो बाँस के फंदे गड़े हुए है।

जश्न ऐसे कुछ लिखा हुआ हैं कुछ लोग गा रहै हैं माइक लगा हुआ है।

अब मुझे यहाँ पर ए किसी बिल्डिंग का अ --

और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा एक लड़का है बीच में सीमेंट की खुराई हो रही है और --

टाइप का मेज़ रखा हुआ ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है सामने की तरफ जो सफ़ेद रंग का हैं ।

''अ यहाँ पर मुझे ए फॉर इंडिआस --''

लगे हुए है यहाँ पे चड्डे भी लगे है कुछ और रैक भी बोहत तरीके के--

मुझे यहाँ पर शास्त्रीय संगीत का एक अ --

अ यहाँ पर मुझे एक चर्च दिखाई दे रहा है जिसमें फादर की फोटो है फादर --

एक तरफ गेट के अंदर हल्का सा खुला हुआ दिखाई दे रहा है जो की ग्रे क--

फूल की एक पंखुड़ी ले रखी अ फूल ले रखा है। और अम्ब जंगल --

सीढ़ी बनी हुई है जिससे हम--